पीछे मे एक बैनर लगा है उस बैनर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध का चित्र है।

यहां पर ये गमला है उसमें पौधा लगा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक माल का दृश्य है इस मॉल में तरह तरह की दुकानें दिखाई दे रही हैं।

सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ व्यक्ति उस मोटरसाइकिल को पड़कर खड़ा दिखाई दे--

यह एक प्राकृतिक दृश्य है यहां पर तलाब दिखाया गया है।

यह एक हॉस्पिटल के अंदर के कमरे का छवि है।

स्विच नजर आ रहा है एक बोतल भी दिखाई दे रहा है।

कुछ व्यक्ति आपस में बातें करते नजर आ रहे हैं।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

यह एक कोचिंग क्लास है इस कोचिंग क्लास में सफेद कलर का डेस्क लगा हुआ है।

यह एक बगीचा है इस बगीचे में तरह तरह के पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह है।

यह बाल दाढ़ी वाले सैलून है इस सैलून की गेट बिल्कुल ग्लास से बनी हुई--

जो कलरफुल ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक कुर्सी पे एक थैला रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं कमरे के अंदर में एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है।

बहुत सारे लोग यहां पर आनंद ले रहे हैं।